और सामने कुछ टेबल पड़ी है सफेद कलर की है इनके ऊपर कुछ मग्गे रखे हुए है कुछ गिलास रखे हुए हैं।

और टेबल पर एक आदमी बैठा और कुछ व्यक्ति सामने की तरफ खड़े हैं।

इस फोटो के अंदर एक बदा बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है जिसमें नीचे ईट पड़ी है और कुछ मिट्टी पड़ी हुई है।

साइड में दीवार पर एक पंखा है जिसमें एक सफेद कलर के वायर निकल रही है।

और सामने एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम लिखा हुआ है।

और सामने एक बोड है जिसके नीचे कुछ गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

इनके ऊपर कट्टे लगे हुए हैं और टेप चिपके हुए हैं।

और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

नीचे की साइडो में जाली का गेट लगा हुआ है और शेर छपे हुए हैं।

पीछे की तरफ दीवार पर एक स्विच भी लगा हुआ है और एक गेट लगा हुआ है।

नीचे कुछ ग्राउंड में घास बिछी हुई है और सामने की तरफ एक टीन की छत बनी हुई है।

और एक टंकी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर और पीछे को तरफ एक बाउंड्री दिखाई दे रही है।

और इन में अलग अलग ब्रांड की दारू की बोतलें रखी हुई हैं रेड लेबल ब्लैक लेबल ब्लैक डॉग आदि।

सामने की तरफ कुछ दारू पैकिंग में रखी हुई है और नीचे कुछ कांच के ग्लास भी रखे हुए हैं।

साइकिल के पीछे एक टेबल है जिसके उपर भगौने रखे हुए हैं और एक आदमी है दुकान के शटर के साइड में बैठा हुआ है।

नीचे कुछ मीठे के थाल रखे हुए हैं जिनमे कुछ डिब्बे रखे हुए है सफेद कलर के।

साइड में एक पंखा दिखाई दे रहा है जो एक बिल्डिंग के अंदर चल रहा है।

आगे की तरफ एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर ऊपर एक लाल कलर का बोर्ड है और कुछ लिखा हुआ है।